यहां पे बहुत सारे बिल्डिंग है आगे ग्राउंड है जिसमें बच्चे सब खेलते हैं यहां पे कुछ खंभा टाइप का लगा हुआ है।

यह योगा का जगह लगता है शायद टीचर ने अपने घर पे ही योगा क्लास खोला हुआ है यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ --

जुलूस में बहुत सारे झगड़ा भी हो जाते हैं बगल में एक बड़ा सा घना सा --

ये शायद असली व्यू हो सकता है बाहर में बांस से घेरा हुआ है। बांस पे बहुत सारे कपड़े कपड़े लाडे हुए हैं बाहर में --

यह एक किराना दुकान लग रहा है उसके बगल में चप दो चप्पलो के दुकान है।

ऊपर में पैंपर्स पैंट्स भी लटका हुआ है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं।

बहुत ज्यादा अच्छा लग लगता है और यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है और यहां पे लाल --

है यहाँ का रंग ऑरेंज है ऊपर आसमान भी बहुत हरा --

बहुत सारे रंगों के फूल हैं और ये बहुत हरा-भरा है जिसके कारन पानी का भी रंग --

जहाँ पे दोनों तरफ से गाछ है ऊपर नीला आसमान है जो बादलों से ढका हुआ है नीचे नदी है।

यह एक क्लास रूम का फोटो है जहां पर बहुत सारे ब्रेंचेस लगे हुए हैं आगे में बहुत बड़ा-सा --